ये एक सब्जी का मार्केट दिख रहा है जहाँ निचे सब्जियां पड़ी हुई हैं जैसे शिमला मिर्च करेला --

दो खिड़कियां है खिड़कियां के बाहर पिलर है जो पिंक के एक पेड़ है जिसका जो टहनी दिख रहा है सिर्फ।

यह इमेज में मुझे एक बहुत साफ़ सुथरा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड के उस पार छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए है जो बहोत सुन्दर लग रे है ।

एक लड़का है फिर साइड में पिलर है जो रेड कलर में उसके ऊपर बतिया लगी हुई है दो ऊपर बादल पूरा साफ है और बतिया के साइड में एक पेड़ है जो खाली है।

ये इमेज में मुझे खेत का सीन दिख रहा है जहा दूर-दूर तक हरा-हरा दिख रहा है फिर एक खम्भा है जिसमें बहुत-सी तारे लिपटी हुई हैं छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं तीन चार और --

बादल साफ़ है पूरा एक तरफ ब्लैक हो रहा है एक तरफ वाइट हो रहा है टावर में बहुत सारे छतरी लगे हुए हैं छोटे-छोटे --

एक बच्ची मास्क लगाए हुई है और और उसके आस-पास सीज़र्स है फिर --

खड़े होकर फोटो क्लिक करवा रहे है कंधे के उप कंधे देकर।

इस इमेज में बहौत पुराना मंदिर है जिसकी दीवारें बहौत ऊँची-ऊँची हैं ऊपर में तीन --